यह एक होटल का चित्र है।

सामने एक बोड लगा हुआ है।

जो की पीले रंग का है।

जिसमें कवर चढ़ाए गए हैं।

और जो आदमी खड़े हैं।

यह एक रास्ते का चित्र है।

सामने कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और एक मैट लगाई गई है।

और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लिखा है।

इसमें ढेरों सारे बाइकों के फोटो लगे हुए हैं।

सामने महिंद्रा का बोर्ड लगा हुआ है।

किनारे में नारियल के गाँछ लगी हुई हैं।

यह एक होटल का चित्र है।

सब लोग प्लेट में खाना खा रहे हैं।

ऊपर से पानी बरस रहा है ।

ऊपर से पानी गिरते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है।

काफी बड़ा है।

और प्लस का साइन है।

खाने पीने के समान है नीचे में एक ट्राली भी है।

यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं इसमें ढेरों सारे झोले रखे हुए हैं।

में बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि सब्जियों को देख रहे हैं।

जो कि लेटे हुए हैं सामने एक बड़ा सा छज्जा टाइप बनाया गया है।

टंकी लगा हुआ है एक पेंटिंग बनी हुए--

यहां पर ढेरो सारे सामान रखे हुए हैं।

तीन चार बेड लगे हुए हैं।

और छोटे छोटे गमले है।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

जिसे एक टेबल पर खड़ा किया गया है।